और यहां पे करके से ढका हुआ है और ये जो व्यक्ति है वह सफेद कलर का टोपी पहना हुआ।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

यहां पर बहुत सारे खेतों मे धान के छोटे-छोटे पौधे है जो कि बहुत ही हरे-भरे है।

ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जो की सफेद रंग का है इसमें इसमें गेट के आगे दो पिलर बना हुआ है।

जो की काफी मोटा है। बगल में दो बाइक है जो की खड़ी हुई है। बगल में एक पेड़ है जो काफी बड़ा है। वे जो दिवार है वो सफ़ेद रंग का --

यहाँ पे एक बड़े प्लेट में खाने रखे हुए हैं जो की टेबल पर है टेबल जो है वो ब्लैक कलर की है और पलेट जो व्हाइट कलर की प्लेट है।